इस तस्वीर में बहुत सारा कार दिख रहा है बड़ा बड़ा मकान दिख रहा है।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

एक रास्ता दिख रहा है एक आदमी जॉगिंग कर रहा है नीचे बहुत कारपेट बिछा हुआ है बहुत सारी लड़कियां व्यायाम कर रही हैं।

सामने सब कुछ अंधेरा दिख रहा है।

बहुत सारा चिमकी लगा हुआ है।

ऊंचा टीला दिख रहा है और बहुत सारे दुकान हैं।

इस तस्वीर में एक बड़ा कमरा दिख रहा है।

इस तस्वीर में एक बड़ा कमरा दिख रहा है कमरा में बहुत तस्वीर लगा है शीशे का दरवाजा दिख रहा है।

वाटर प्युरीफाइअर मशीन दिख रहा है।

चित्र में बहुत अनोखा है ऊपर रेलिंग लगा है रेलिंग लोहे का है आसमान सफेद दिख रहा है।

इस तस्वीर में एक कार दिख रहा है कार सफ़ेद रंग का है एक आदमी दिख रहा है।

बहोत सारा मकान दिख रहा है मकान का ईंट लाल दिख रहा है।

एक बड़ा बोर्ड लगा है बोर्ड पे फूल भंडार लिखा है ऊपर खिड़की दिख रहा है खिड़की शीशे का है।

एक बड़ा नाला का पानी जमा दिख रहा है सड़क लंबा चौड़ा दिख रहा है।

इस तस्वीर में एक गार्डन दिख रहा है हरा-भरा घास दिख रहा है बड़ा पेड़ दिख रहा है।

ऊपर सोलर लाइट लगा है एक बड़ा पेड़ है नीचे रास्ता है रास्ता में ईंट बिछा है।

बहुत बैठने का जगह दिख रहा है।

इस तस्वीर में एक जिम दिख रहा है जिम में बहुत सारा सामान दिख रहा है।

एक बड़ा तस्वीर टंगा है तस्वीर लड़के का है।

एक कुर्सी दिख रहा है सामने शीशा दिख रहा है।

इस तस्वीर में बहुत सारा मछली दिख रहा है मछली सब मड़ा दिख रहा है।

बड़ा सफेद डब्बा दिख रहा है।

एक पानी का बोटल दिख रहा है एक मोबाइल फोन दिख --

यह डांस क्लास का तस्वीर है।

सामने का दीवाल सफेद दिख रहा है।

नीचे बहुत कारपेट बिछा है।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

अंदर कुछ लोग दिख रहे हैं भारतीय तिरंगा दिख रहा है।

इस तस्वीर में तीन मूर्ति दिख रहा है मूर्ति भगवान बुद्ध का है।

बहुत हरा पेड़ पौधा दिख रहा है।

आसमान सफेद दिख रहा है।

इस तस्वीर में एक बड़ा कमरा दिख रहा है यह तस्वीर किसी रेस्टोरेंट का है।

बहुत सारा कुर्सी दिख रहा है।

बहुत सारा टेबल दिख रहा है।

पाइप दिख रहा है बहुत सारा लाइट जल रहा है।

नीचे सफेद टाइल्स लगा है कुर्सी लकड़ी --

इस तस्वीर में एक बड़ा मकान दिख रहा है।

बहुत सारा दरवाजा दिख रहा है।

पेड़ काफी बड़ा दिख रहा है आसमान सफेद दिख रहा है।

एक बड़ा दरवाजा दिख रहा है दरवाजा सफेद रंग का --

आसमान सफेद दिख रहा है।

हरा पेड़ दिख रहा है एक आदमी चलता दिख रहा है सामने गमला रखा है गमला में फूल लगा है।

इस तस्वीर में एक बड़ा रास्ता दिख रहा है।

एक सफेद मरकरी दिख रहा है।

हरा पेड़ पौधा दिख रहा है घास दिख रहा है।

कुछ लड़के खड़े दिख रहे हैं आसमान से प्रकाश आ रहा है।

बड़ा बड़ा बोर्ड दिख रहा है एक ए_सी का आउटडोर दिख रहा है।

खिड़की दिख रहा है खिड़की में शीशा लगा है।

सैटल का गेट दिख रहा है गेट का--

ईंट बिछा हुआ है आसमान सफेद दिख रहा है।